इस घर का रंग थोड़ा सा पीला और सफ़ेद दिखाई दे रहा है इस घर के बगल से सटे एक और घर दिखाई दे रहा है।

है इ-रिक्शे के बगल में एक --

मैदान के ऊपर बहुत सारे लोग खड़े दिख रहे हैं मैदान के दूस सामने की ओर --

हेंगर में लटके हुए दिख रहे हैं कुछ कपड़े।

निकल गई है ये पत्तियों का रंग हरा दिखाई दे रहा है।

यह एक गुफा दिखाई दे रही है।

यह एक बहुत बड़ा चट्टान जैसा पहाड़ दिखाई दे रहा है इस चट्टान के नीचे कुछ कमरे की तरह दिखाई दे रहा है इसमें एक दरवाजा बना दिख रहा है ।

इस बिल्ड यह ऐ यहां के दीवार टाइल्स की दिख रही है।

सफ़ेद और लाल रंग का है उसके आगे बाइक खड़ी दिख रही है।

रोड दिखाई दे रहा है। जहां पर दो तरफ रोड दिख रहा है। एक तरफ आने के लिए और एक तरफ जाने के लिए ए --